वो पेड़ों मे पत्ते है और इस पेड़ो इस पेड़ मे पत्ते वगैरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा।

यह रोड आती जाती दिखाई दे रही है| मतलब दो तीन मोड़ दिखाई दे रहा है चौराहा दिखाई दे रहा है| स्टॉप --

लगा हुआ है औ पुलिस भी वहाँ पे मौजूद है।

बच्चों के फ्रॉक्स ये सभी चीजे अवलेबल है यहां पे कपड़े सारे रखे है टंगे हुए है।

यह बुद्ध जी की एक बहुत बड़ी मूरत दिखाई दे रही है जो गोल्डन कलर --

यह गधे हैं जो की दो गधे यहां पे बंधे हुए हैं एक चीज़ में।

लोहे की रो जो जाली लगी है उसे उसे उसके पास खड़े हुए हैं।

यह एक पार्क हिय | पार्क में बहुत सारी डबा लगी हुई | रो लाइनिंग बनी हुई है| उसके उस साइक बिल्डिंग ए दिखाई दे रही है| रोड भी दिखाई दे रहा है।

कुछ यहां पे एक सामने येलो कलर का टी-शर्ट और बैग रेड कलर का बैग टांगे हुए खड़ा है।

और वहाँ पे मतलब लड़की ने उम सरस्वती माता बनी हुई है कुछ लड़के बीच में परफॉर्म कर रहें हैं साइड में।

यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई है जो की पूजा कर रही है कुछ महिलाएं के तिलक भी लगा हुआ है कुछ ने--

सूपा पकड़ा हुआ है उसमे बहुत सारे फल फ्रूटस रखे हुए है और यहाँ पूजा कर रही है छठी माई की।